मुझे यहाँ पर बहुत सारे मकान दिखाई दे रहे है मुझे यहाँ पर पानी की टंकी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर महिलाएं दिखाई दे रही हैं मुझे यहाँ पर गाड़ी दिखाई दे रही हैं।

मझे यहाँ पर साइकिल दिखाई दे रही हैं मुझे यहाँ पर इंसान दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर गेट दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर आसमान दिखाई दे--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

उसमे पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा हैं और ये यहाँ पर पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं जो हरे-भरे हैं।

मुझे एक पीले कलर में दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर एक बहुत बड़ी दुकान सी दिखाई दे रही है जो बहुत बढ़िया-बढ़िया मुझे लड़की दिखाई दे रही है।